और यहाँ बैक के बार दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

और यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बाग के अंदर काफ़ी सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।

पाठशाला की ईमारत बहुत बड़ी बनायी हुई है।

और मंच को काफी अच्छी तरह से सजाया गया है।

चर्च के बाहर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

भोजनालय के अंदर काफी सारी टेबल कुर्सियाँ लगाई हुई है।

व्यामशाला के अंदर कसरत करने के लिए काफी सारी मशीन लगायी हुई है।

जिनको जाले के अंदर कैद किया हुआ है।

यहां दृश्य के अंदर एक आदमी उलटा लेटा हुआ है।

यह दृश्य एक पाठशाला का दिखाई दे रहा है।

रिक्शे के आगे एक जहायरत का पर्चा लगाया हुआ है।

यह दृश्य के अंदर तीन बड़ी-बड़ी ईमारत दिखाई दे रही है।

और ब्रिज के ऊपर से एक ट्रैन पसार हो रही हैं।